काफी अच्छा ग्राउंड लग रहा है और साइड में बाउंड्री है।

में एक ए.सी. लगी हुई है और विंडो भी है। बहुत बड़ा ऑफिस है। बहुत अच्छा लग रहा है।

बहुत ही अच्छी दूकान है बहुत बड़ी दुकान है इसमें केला सेव अंगूर और बहुत ही सारे फल रखे हुए हैं।